यहां पर कई तरह के फूलों से सजावट की हुई नजर आ रही है।

ये इमेज रात के समय ली गई है। यहाँ पर बैठ--

इमारत मे खिड़कियां बनी हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर --

इस इमेज में कुछ इमारतें दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर गेट के ऊपर हिंदी के शब्दों में कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है।

यहाँ पर काफ़ी लोग हैं।

यहाँ पर शत पर बहोत लाइट सजग रहीं हैं।

यहाँ पर काफ़ी पौधे उगाए हुए नजर आ रहे है।

इस इमेज में एक इमारत दिखाई दे रही है।

एक कंप्यूटर रखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर--